बीच मे झरना टाइप का दिख रहा है जिसमे पानी बेहे रहा है।

मैदान के चारो ओर बड़ी-बड़ी इमारते भी दिख रही हैं मैदान में चारो ओर गाछ वृक्ष भी काफी लगे हुए हैं।

इसमे काफी बड़े-बड़े वृक्ष पौधे लगे हुए है घूमने के लिए काफी जगह है।

ये मकान पर कैसे कलर का कलर किया हुआ है मकान के आगे वृक्ष है मकान के आगे एक झण्डा तोलन का भी जगह बनाया हुआ--

जो कि किराने कि दुकान है कि आगे गैस सिलिन्डर और किराने के सामान दिख रहे हैं।

घना जंगल है इस घने जंगल दोनों बगल ऊँचे-ऊँचे पर्वते--

मिठाई की दुकान के अंदर एक शोकैस दिख रहा है जिसमे बोहोत सारी मिठाईया रखी हुई है जिसमे पेड़ा लड्डू आदि रखे हुए है।

यहाँ पर शायद त राम जी रुके थे और यहां पर राम जी ने सातक किया था।

इसमे कुछ छो बड़े-बड़े झोंके से दिख रहे है नीचे ए.सी. लगा हुआ दिख रहा है। कुछ लोग खड़े हु --

नदी मे काफी पानी दिख रहा है नदी का पानी बोहोत साफ और सुंदर है।

एक नदी दिख रहा है नदी काफी बड़ी है।